इसमें दिखाई दे रहा है यह एक पेट्रोल पंप है जिसमें की तीन मशीने लगी हुई है।

एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बैग रखा हुआ है।

ऊपर एक ब्लैक हेलमेट रखा हुआ है नीचे एक रेड तबला रखा हुआ है।

एक बाइक नजर आ रहा है।

ऊपर पूरा लोहे से ग्रिलिंग दिया गया है।

बहुत से व्यक्ति है जिसने टोपी पहना हुआ है।

सामने एक व्यक्ति बैठा है जिसने की स्वेटर पहना हुआ है और ब्लू कलर शर्ट पहना हुआ है।

दृश्य में दिखाई दे रहा एक बड़ा सा व्हाइट कलर का घर है जिसमें सामने एक पिलर बना हुआ है।

ऊपर दो टंकी नजर आ रहा है जो काले रंग का है।

कुछ से व्यक्ति खड़े हैं या बाहर।

ऊपर लोहे से गेल दिया गया है और बहुत सा खिड़की नजर आ रहा है।

सामने दो तीन बाइक और नज़र आ रहे हैं।

ऊपर लाइटें लगी हुई है एक पंखा नजर आ रहा है।

यहां पे रेड कॉरपेट बिछाया गया है जिसपे वाइट कलर के चेयर लगाए गए हैं जिसमें कि बहुत से व्यक्ति बैठे हुए हैं।

इसमें लिखा गया है लाउंड्री लैब वी केयर योर फैब्रिक्स योर फैसविक्स ट्वेंटी फोर हॉर्स ।

यहां कुछ लकड़ियां सुखी हुई रखी गई है।

सामने एक काले रंग का बना हुआ गेट नजर आ रहा है।

दो गेट है कुछ पौधे लगे हुए हैं खिड़की के बाहर।

ऊपर कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं एक गाड़ी रखा हुआ है।